बहोत सारे लाइट दिखाई दे रहा हैं।

ए_टी_एम के अंदर एक बैनर लगा हुआ जहां पे कंगन दिखाई दे रहा है।

पहाड़ियां दिखाई दे रही है और दो तीन बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहा है।

यहां पे पीछे से एक लड़का उसको देख रहा है।

यहां पर दो बछड़ा दिखाई दे रहा है दो बकरी दिखाई दे रहा है।

बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

घर दिखाई दे रहा है।